एड भी दिखाई दे रही है।

गेट की पीला कलर दिख रहा है।

इस दृश्य में रोड का चित्र दिखाई दे रहे है यहां पे बाइके और इस्कॉर्पियो भी जा रही है।

ए_सी भी दिखाई दे रहे हैं ।

ये चेयर भी दिखाई दे रहे है।

घड़ी भी दिखाई दे रही है।

सीढ़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे माला से सजाया हुआ है।

इस दृश्य में एक फील्ड का चित्र दिखाई दे रे।

गाड़ी बहुत सारा लगी हुई है एक हेलिमेंट भी ब्लैक कलर का रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक गॉर्डन दिखाई दे रही है।

दो नाव भी दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर का जूता पहनी हुई है।

कुछ इधर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

दो टेबल लगे हुए हैं।

इधर कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक महिलाएं बैठे हुए हैं।